केतना बड़का एखर दुकान है बड़े बड़े कापी किताब सब जग दुकान मे मढ़अल है सब है ए ठने बेचे बर बेचे बरआए--

बड़खा रोड कर स्कूल बनी सा है।